फोटो में एक पेड़ है जिसपे ग्रीन और येलो कलर का पैंट किया हुआ लेडी --

अह और इसपे लेंटर का काम चल रहा है।

इमेज में एक में बहोत सब्जी मंडी है सब्जी मंडी में--